उसका में एक व्हाइट कलर का गाड़ी रख के है।

तस्वीर में एक दुकान दिखाई दे रहा है।

लकड़ी का बहुत सारा सामान रखे हैं जैसे की चम्मच--

इसका ऊपर एक काला कलर का प्लेट है।

उसका ऊपर नींबू प्याज के रस और पनीर ये सब टाइप का फूड्स लोग बहुत रखे है।

इस तस्वीर में बहुत सारा घर दिख रहा है और बहुत बड़ा कंपाउंड दिख रहा है।

सामने में घर भी दिख रहा है।

दूर में एक मशीन भी दिख रहा है।

दुकान को प्लास्टिक से बनाया हुआ हैं लकड़ी भी लगा के हैं।

गार्डन को लकड़ी से बाउंड्री बनाके हैं।

को येलो रेड ब्लैक व्हाइट कलर डिजाइन करके है।

जिसको टीन से बनाया है और काठ से बनाया है।

और ब्लू कलर का ड्रम भी रखे हैं।

बाहर में बहुत सारा बादर भी आ के है।

जिनमे नंबरिंग भी करके हैं।

बहुत सारा स्कूटी और बाइक भी दिखाई दे रहा है।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

यहां हमें स्कूटी भी दिख रहा है।

रेड और वाइट कलर का दीवार भी बनाके है।

ये तस्वीर में बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारा नीचे में पेड़ है ग्रास लोग भी है।